येका अनुसार यख मा जी जु छा हमथे एक बड़ी भारी की ईमारत च दिख्येणी यख मा जी य ईमारत देखण मा जी कुई चर्च छ लगण लग्यूं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छ हम ते एक सफ़ेद रंग की प्लेट छ दिखणी ईं पर जु छा चिकन बिरयानी छ रखीं यखम दुई ढुंगा भी छन रख्यां।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक गाड करा दिखेणी यख मा जी जु छा एक खालू करा खाला मा जी ये गाड छ बगणी।

ये ईमारत माँ जी सिलेटी और लाल रंग छ होयुं यु थोड़ी थोड़ी ताजमहल की तरह भी छ लग्ण लगु यख मा जी रोड दिखेणी रोड का किनारा लाल रंग की कार छ लगीं यख फण हरयां भर्यां डाला भी छा दिखेणा।

रख्युं यखम तेल का जरखिन छन रख्यां और रस का पैकेट छन रख्यां अलग अगल खानो पर अलग अलग सामान भी छ रख्युं।

आरती छ उतानु पूजा छ कनु यख मा जी कुछ लोठ्या छन रख्यां स्टील का लोठ्या छन यखम बंठा भी छ रख्युं फल फ्रूट च चड़ाणु यु आदमी यखम कांस की थाली छन।

त्र का अनुसार यखमा जी जु छा हमते एक बड़ी भरी की नदी कर छ दिखेण लगीं यख नदी मा जी --

यूं पर फूलों की माला छ पैनाइ।

यख मा जी गमला छ दिखेणा पत्ता छन दिखेणा यख फण रेलिंग छ दिखेणी हरयूं भरयूं मैदान छ दिखेण लग्युं यख फणु।

का अनुसार यखा मा जु छा हम तें दुई से तीन छोटा छोटा पुतला करन दिखेणा यख पिछाड़ी मा जी कुछ भिछु करा छन बणाया यूँ की भी मूर्ति --